यहां खिड़कीये दिखाई दे रही है।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

यहां एक टेलर मशीन भी दिख रहा है।

ये एक ब्रिज पार करने का दृश्य है।

यहां पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

दूसरे फेंसिंग में फुटबॉल दिखाई दे रहा है।

यहां कलर पेंट का डिब्बा दिखाई दे रहा है।

यहां वेटलिव वेट मशीन दिखाई दे रहा है।

घर पत्थर से बनाया गया है।

घर में बहुत सारे पिलर भी दिखाई दे रहा है।

यहां हर जगह बैठने का जगह दिया हुआ है।

यहां मुस्लिम बैठे हुए हैं।

यहां एक सी_सी_टी_वी कैमरा का मॉनिटर दिखाई दे रहा है।

यहां घास फूस भी लगाया गया है।

यहां तीन कुर्सियां दिखाई दे रहा है यहां तीन आईने भी दिखाई दे रहा है।

यहां ग्रिल भी दिखाई दे रहा है।

यहां भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ा नदी दिख रहा है।

नदी के पास बहोत सारे लैंड दिखाई दे रहे है बीच बीच में नदी नहीं है।

घर के आगे बहुत सारे बाइक खड़े हैं।

ये एक नदी जैसा दिख रहा है।

एक आदमी खड़ा है यहां तमिल में पोस्टर दिखाई दे रहा है।